meet the gimp में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
मुझे यह image norman से एक email के द्वारा mail
उसने इसे सेव करने को कहा है
raw convertor raw convertor का उपयोग करने के बाद उसे यह image मिली है और यहाँ यह original image है
images की तुलना करके norman ने क्या किया है यह स्पष्ट होता है
पहले उसने image को घुमाया है और उसके बाद foreground में रंग और चमक पाने के लिए उसने curves tool curves tool से image एडिट की है और बादलों को बहुत अधिक गहरा न करने की कोशिश की है
जब आप यहां इस image को देखते हो तो बादल बहुत खूबसूरत दिखते हैं
मुझे वे पसंद हैं और मैंने इस show पर इस image को दिखाने के लिए उनसे अनुमति माँगी है और मैं अब उसका काम फिर से करने की कोशिश करुँगी और फिर मैं उसकी image में बेहतर बादल प्राप्त करने की कोशिश करुँगी
लेकिन पहले देखते हैं अगर इस image के बारे में हमें कुछ exif जानकारी मिलती है जो संकेत देता है कि क्या गलत हुआ है
आप देख सकते हैं कि यह एक panasonic camera है और इस camera का sensor बहुत छोटा होता है
आप अपनी shirt की जेब में इस camera को रख सकते हैं
और यहाँ हमारे पास इक्स्पोश़र exposure data है
इक्स्पोश़र time एक second में एक हज़ार है और aperture 56 है
flash on था और camera ने image में flash के प्रभाव की गणना की है
और इस तरह के छोटे camera का flash इस तरह के एक दृश्य के साथ काम नहीं करता
मुझे लगता है image के इस भाग को चमकदार करने के लिए आपको अपने पीछे एक छोटे परमाणु bomb की तरह किसी चीज़ की जरूरत होगी
यह image jpeg में सेव हुई है और जो एक और समस्या देता है
यह क्षेत्र जो यहाँ इस image में वास्तव में दिलचस्प हिस्सा है jpeg compression के कारण अत्यधिक गहरा हो गया है
और जब मैं क्षितिज में zoom करती हूँ मैं एक पूर्णतः स्पष्ट stuff देख सकती हूँ लेकिन यह अधिक तीक्ष्ण है और क्षितिज पर वहाँ एक जहाज भी है
बादल बहुत स्पष्ट हैं लेकिन जब हम गहरे हिस्से में जाते हैं आप यहां एक पेड़ देख सकते हैं लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है
यह इसलिए क्योंकि jpeg image के उन भागों को छोड़ देता है जिनको camera का computer program ऐसा समझता है कि आप कभी नहीं देखेंगे
लेकिन मुझे यह stuff यहाँ देखना है और मैं jpeg compression के साथ थोड़ा अटक गयी हूँ क्योंकि यहां खोई हुई जानकारियाँ फिर कभी नहीं दिखाई देंगी
और जब आप यह raw raw shoot करते हैं तब आप इस तरह की समस्याओं से बचते हैं और अगले tutorial में मैं आपको uf raw converter raw converter और gimp के साथ इसका इस्तेमाल कैसे करे इसे दिखाऊँगी और मुझे लगता है कि अगले tutorial के लिए यह सही विषय होगा
मैं यहाँ टूल बॉक्स में इसे खींच कर gimp में image load करती हूँ और window बड़ा करती हूँ
अब मेरी पहली step इस image की sizing करना है क्योंकि यह image काफ़ी बड़ी है जिसके परिणामस्वरूप xcf फ़ाइल 40 mega bytes से अधिक हो जाएगी
tool bar में image पर click कर साइज़ कम किया जा सकता है scale image scale image चुनें मैं चौड़ाई मानिये1000 pixel में बदलती हूँ और जब मैं टॅब दबाती हूँ मुझे ऊंचाई 750 pixel मिलती है और मैंने उत्तम interpolation चुना है इसलिए मैं scale scale पर click करती हूँ
यहाँ frame में पूरी image प्राप्त करने के लिए shift + ctrl + e दबाएँ और अब मैं इस image को editing के लिए set करती हूँ
पहली step rotating rotating होगी
पिछले tutorials में मैंने आपको image rotate करने के दो तरीके दिखाए हैं और आज तीसरा तरीका दिखाती हूँ
image में ज़ूम करने के लिए मैं उसी step का अनुकरण करती हूँ जहाँ मैं एक क्षैतिज line देख सकती हूँ और क्षैतिज line क्षितिज पर है क्योंकि परिभाषा के अनुसार क्षैतिज क्षितिज ही है
फिर मैं tool बॉक्स में measurement tool चुनती हूँ और मैं info window नहीं चुनती हूँ क्योंकि यह image frame के बीच में popsअप होता है लेकिन मुझे यहाँ नीचे status bar में सारी जानकारी मिल सकती है
अब क्षितिज का angle प्राप्त करना आसान है सिर्फ़ क्षितिज पर cursor रखें mouse button दबाएँ और इसे खींचे
line को दूसरी तरफ खींचे और क्षितिज के पैरेलल एक line बनायें और button छोड़ें
status bar में angle info को देखें और यहाँ मैं देखती look कि angle 164° है
अब मैं rotate tool चुनती हूँ सिर्फ image पर click करती हूँ और type करती हूँ163° माइनस क्योंकि मैं plus 163° counter करना चाहती हूँ
rotate पर click करें और आपको rotate की हुई image प्राप्त होती है
क्षितिज का परिक्षण करने के लिए मैं scale को नीचे खींचती हूँ और यह क्षैतिज है
अगली step image को crop करना है लेकिन मैं image को अभी crop नहीं कर सकती हूँ क्योंकि image का यह भाग नहीं दिखता है अतः मैं वास्तव में stuff का निर्णय नहीं कर सकती
मुझे नहीं पता कि कहाँ crop करना है अतः image के इस भाग को थोड़ा ज़्यादा चमकदार करें
मैं curves tool पर काम करना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले मैं layer की एक copy बनाती हूँ
क्योंकि जब मैं curves tool प्रयोग करती हूँ image की जानकारी लुप्त हो जाती है
अतः image के साथ कुछ भी ऐसा न करें जो आप वापस नहीं ला सकते
मैंने rotate कर दिया लेकिन आगे की steps में original image में कुछ भी न करें
पहले मैं भूमि land के भाग को edit करुँगी अतः मैं इस layer को land कहूँगी और field में double click करें जहाँ name मौजूद है और return दबाएं
अब layer का named land है
मैं curves tool चुनती हूँ image में click करती हूँ और अब मैं image का अन्वेषण करुँगी
image का यह भाग वास्तव में सबसे grass है कोई भी इसे आसानी से पहचान सकता है लेकिन यहाँ की घास भी सबसे ज़्यादा गहरी है
पानी यहाँ gray scale के इस भाग की तरह प्रतीत होता है और आकाश स्पष्तः यह हिस्सा है
अतः मुझे image में भूमि को चमकदार करना है और मैं इसे सिर्फ ऊपर खींचकर यह करती हूँ
अब सवाल जो दिमाग में आता है कि मुझे यह कितनी दूर तक खींचना चाहिए क्योंकि जब मैं बहुत दूर जाती how तो यह artificial लगता है
और यदि मैं curves में बड़े अंतर के साथ आकाश और भूमि को मिलाना चाहती हूँ तो यह वास्तविक image की तरह नहीं दिखता
अतः मैं इसे थोड़ा नीचे खींचती हूँ
मैं इसकी कोशिश करती हूँ
यह यहाँ अच्छा लगता है
समुद्र ज़्यादा चमकदार नहीं है और chapel प्रार्थनास्थल भी दिखता है
अतः ok पर click करती हूँ
भूमि के भाग को एडिट करने के बाद अब मैं आकाश पर जाती हूँ
अतः मूल layer की दोबारा एक copy बनायें और इसे ऊपर so जाएँ और इसको sky name दें
layer पर double click करें name में sky type करें enter दबाएं और हमारे पास sky है
अन्य layers को नुकसान पहुँचाए बिना मैं sky layer को edit करना चाहती हूँ और ऐसा करने के लिए मैं layer mask के साथ कार्य करती हूँ
sky layer पर right click करें add a layer mask पर click करें और white layer mask चुनें यानी full opacity जिसका मतलब है यह layer पूरी तरह से दिखाई देती है और यह सफ़ेद है
मैं land layer को छुपाना चाहती हूँ और मैं समुद्र और आकाश के बीच sharp किनारा भी नहीं चाहती हूँ और इसके लिए मैं gradient tool प्रयोग करती हूँ
gradient केवल काले और सफेद के बीच एक चीज़ है
अब मैं यहाँ scrap layer में आपको यह दिखाती हूँ
मैंने gradient tool चुना है और यह नयी चीज़ है जो मुझे इत्तफ़ाक से मिली है कि जब आप tool icon पर double click करते हैं tool विकल्प स्वतः ही चयनित हो जाते हैं
मुझे नहीं लगता कि यह आपके लिए नयी चीज़ है लेकिन यह मेरे लिए नया है
जानना अच्छी बात है
gradient tool पर वापस जाते हैं जब मैं इस line को left mouse button क्लिक करके यहाँ खींचती हूँ और इसे छोड़ती हूँ
शुरूआती point के बायीं तरफ का क्षेत्र काले रंग से भर जाता है और अंतिम point के दायीं तरफ का क्षेत्र सफ़ेद रंग से भर जाता है जो gradient की अन्य side है
और सफ़ेद एवं काले के बीच का क्षेत्र grays का भिन्न क्रम है और इसे gradient कहते हैं
और मैं लम्बा gradient या बहुत छोटा gradient बना सकती हूँ
यहाँ भिन्न gradient tools हैं और मैं यहाँ काले और सफ़ेद को stick करुँगी
और यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं जैसे radial जहाँ आप वृत्त बना सकते हैं
यहाँ बहुत अधिक विकल्प हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं
इस tool के ये विकल्प अन्वेषण करने योग्य है
अतः मैं shape को linear पर set करती हूँ और यहाँ scrap layer को मिटाती हूँ
अब यहाँ मैं sky layer पर कार्य कर रही हूँ image पारदर्शी बनाने से layer प्रत्यक्ष करने तक gradient काले से सफ़ेद तक set किया है और मैं layer dialog पर वापस आती हूँ और जाँचती हूँ यदि layer को मैंने खुद सक्रीय किया है क्योंकि मैं मूल image में paint नहीं करना चाहती हूँ
मैं layer mask को paint करना चाहती हूँ
और image में zoom करने के लिए zoom tool चुनें
इसे थोड़े अभ्यास की जरूरत है
मैं यहाँ इस प्वॉइंट से शुरू और यहाँ अंत करुँगी
मुझे gradient सीधा चाहिए क्योंकि इस तरह का gradient ऐसी image में परिणाम देगा जो मैं नहीं चाहती
step को अनडू करने के लिए ctrl + z दबाएँ
अतः मैं control की दबाती हूँ और अब slider की गतिविधि यहाँ 5 degrees तक सीमित है
अतः मैं यहाँ इस प्वॉइंट से यह बनाना शुरू करती हूँ
जब आप पूरी image पर वापस जाते हैं तो आप देखते हैं कि यह मेरा gradient है
और जब मैं अन्य layer and करती हूँ upper layer में image का केवल upper भाग दिखता है और अन्य background में दिखते हैं
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बहुत यथार्थपूर्ण दिखता है
यह थोड़ासा artificial लगता है अतः अब मैं आकाश को थोड़ा ज़्यादा चमकदार बनाना चाहती हूँ
यह करने के लिए पहले मुझे layer mask को निष्क्रिय करना है और इस पर कार्य करने के लिए मैं layer को सक्रीय करती हूँ अन्यथा मैंने layer mask पर curves tool का प्रयोग किया होता
इसके चारों ओर सफ़ेद frame से आप layer के सक्रीय भाग को हमेशा पहचान सकते हैं
तो इसकी यहाँ कोशिश करें
अब हम आकाश को चमकदार करना चाहते हैं अतः मैं इसे ऊपर खींच रही हूँ
मुझे लगता है कि यह अत्यन्त यथार्थपूर्ण है क्योंकि आकाश चमकदार है और आकाश और समुद्र के बीच का artificial border नष्ट हो गया है
मुझे लगता है यह काम करेगा
अतः अब sky layer और इसके नीचे की layers को बंद करके image की तुलना करते हैं
आप अंतर देख सकते हैं
यह मूल image है
यह layer नया आकाश है और नीचे यह नयी भूमि है
मुझे लगता है भूमि के लिए थोड़ा अधिक contrast प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूँ इसलिए मुझे इसकी कोशिश करनी होगी
अतः land layer पर double click करें और overlay mode चुनें जो आपको थोड़ा अधिक contrast देता है लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत अधिक है अतः मैं opacity को कम करती हूँ
यह बेहतर लग रहा है या नहीं लेकिन मुझे लगता है यह बेहतर है
अब मुझे चार layers मिल गयी हैं
background मूल image जिसकी वास्तव में अधिक जरूरत नहीं है land layer land copy और layer mask के साथ आकाश
और मैं यहाँ image की जानकारी को खोये बिना ही ये सारी values बदल सकती हूँ
layers का प्रयोग करना एक बहुत बड़ा फायदा है
अब आखिरी भाग cropping के लिए norman इसे 7:5 के ratio में crop करना चाहता था क्योंकि उसका printer 7/5 inch का paper उपयोग करता है
तो यह करते हैं 7:5 fixed aspect ratio
crop कहाँ करना है मुझे लगता है मैं भूल गयी कि norman ने इस image को कहाँ crop किया
यहाँ निश्चित करते हैं
मुझे लगता है पेड़ शामिल होना चाहिए और सूखी घास शामिल होनी चाहिए
अतः मुझे यहाँ दायें कोने पर शुरू करना है और बस crop tool को ऊपर खींचें
यह केवल पसंद की बात है और pumping के साथ कुछ नहीं करना है कोई भी सीख सकता है
thirds के नियम हैं
अब मैं इसे अंदर डालती हूँ
यहाँ आप chapel का आगे का भाग देखते हैं जो अब पसंदीदा घटक है
यहाँ अधिक कलात्मक स्वर्ण अनुभाग है और यह सहायक हो सकता है लेकिन मुझे लगता है सबसे अच्छी बस आपकी नजर है
मुझे लगता है यह काम करेगा
मैं इस image को jepg image के रूप में सेव करना चाहती हूँ
और उससे पहले मैं इसे थोड़ा sharpen करती हूँ
जोड़तोड़ करने से पहले sharpening के निशान जो दिख रहे थे अब चले गए हैं
हेलोज़ को देखने के लिए सफेद lines दिखी थीं
मुझे लगता है इस बार भी मैं filters enhance sharpen mode का इस्तेमाल करुँगी
यह मूल रूप से अनशार्पड mask है कुछ mask values preset के साथ sharpening
मैं आगे के tutorial में अनशार्पड mask को cover करुँगी
मैंने पहले कभी भी यह प्रयोग नहीं किया है और उसके लिए मुझे अपने आप यह सीखना है
जिससे कि मैं इसके बारे में कुछ समझा सकूँ
मुझे लगता है यह यहाँ अच्छी तरह काम करता है
मैं जा सकती हूँ और image सेव कर सकती हूँ
आज मैं कुछ मज़ेदार टाइप कर रही हूँ
ठीक है मुझे पता है कि jpeg विविध layers के साथ image को handle नहीं कर सकता है इसलिए image अब exported हो गयी है और बाकी की सारी layer की जानकारियाँ लुप्त हो गयी हैं
और gimp सिर्फ एक चेतावनी देता है
और मुझे लगता है कि 85% quality अच्छी है
फ़ाइल के आकार और image की quality के बीच उचित समझौता
और अब मैं अपनी image को शार्पन और रीसाइज़ करने के बाद वापस आ सकती हूँ जिससे मैं इसे show notes के लिए अपने blog में रख सकूँ
image/scale image पर जाएँ और मैं width को 600 pixels चाहती हूँ
scale इसे scale करें
और अब chain इसे दोबारा sharpen करती हूँ image में लाने वाले परिवर्तनों की श्रेणी में sharpening आखिरी step होनी चाहिए
वास्तव में यह आखिरी step है
algorithm केवल अच्छा काम करता है यदि उसके बाद आप कुछ भी नहीं बदलते हैं
कोई आकार परिवर्तन भी नहीं
अब इसे देखते हैं
मुझे लगता है मेरे पास थोड़ा अधिक हो सकता है
मूल रूप से उसी amount पर समाप्त करते हैं
अब मैं इस image के साथ सहमत हूँ मैं इसे dot 600 की तरह सेव करती हूँ अतः मैं जान सकती हूँ कि blog में बाद में कौनसी image रखनी है
अब दो images की तुलना करते हैं
यह वही है जो norman ने बनाया और यह वो है जो मैंने बनाया
मेरा आकाश निश्चित रूप से बेहतर है और मुझे लगता है norman ने समुद्र और chapel प्रार्थनास्थल के साथ बेहतर काम किया है
और इसका संयोजन वास्तव में एक बहुत अच्छी तस्वीर होगी
मुझे लगता है कि यहाँ मैंने brightening के साथ कुछ अधिक कर लिया है
यहाँ मैं समुद्र की layer को आसान तरीके से fix करने के लिए वापस i हूँ
मैं background layer पर original की एक copy बनाती हूँ
layer को दोबारा sea नाम दें
अब मैं इसे land copy के ऊपर और sky sky के नीचे रखती हूँ
और अब आप देख सकते हैं कि इससे sky layer में कोई बदलाव नहीं आया है केवल भूमि में बदलाव आया है
लेकिन मैं इसे छिपा दूँगी
ऐसा करने के लिए मैं एक layer mask layer mask जोड़ती हूँ
right click करें add a layer mask और gray scale copy of the layer चुनें
आप यहाँ की भूमि देखते हैं यह ज़्यादा चमकदार है
यह वैसा नहीं है जैस यहाँ था लेकिन आप पानी में बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं
और अब यहाँ layer mask पर थोड़ा काम करते हैं
show the layer mask पर click करें
आप इसे यहाँ देखते हैं और sky sky को बंद करें
अब मैं curves tool को चुनती हूँ और मैं curves को इस प्रकार समायोजित करती हूँ कि भूमि गहरी हो जाये
और समुद्र और आकाश चमकदार हो जाते हैं
अब image को देखें
show layer mask पर unclick करें
अब आप देखते हैं कि लगभाग बिना किसी अंतर के यह भूमि के लिए काफ़ी अच्छा है और समुद्र अच्छा है
अब जब मैं sea layer चुनती हूँ तो आप देख सकते हैं कि समुद्र बेहतर है
अब मैं curves tool प्रयोग करके image में values को बदलूँगी
और मुझे लगता है कि मुझे
समुद्र को थोड़ा ज़्यादा contrast देना चाहिए
थोड़ इस तरह से जैसे यहाँ है
यहाँ image में slope की खड़ी ढाल में ज़्यादा contrast है
histogram का यह हिस्सा समुद्र था
अतः मुझे यहाँ बहुत contrast मिलता है
और केवल curve के साथ चारो तरफ fiddle करें जब तक यह fits न हो जाये
मैंने पहले इसकी कोशिश नहीं किया है इसलिए मुझे यहाँ परीक्षण करना ही है
मुझे लगता है कि यह बेहतर तरीका है उससे जो stuff पहले था
अब चट्टानों और समुद्र के बीच के border को देखते हैं
पहले मुझे वहाँ बहुत समस्या थी
इसलिए इस समय मुझे हेलोज़ लगभग नहीं दिखते हैं
और जब मैं यहाँ इसमें zoom करती हूँ
आप hallow की तरह का कुछ देख सकते हैं पर यह केवल समुद्रतट पर लहर है
hallow नहीं है
मेरी पहली कोशिश में मैंने भूमि समुद्र और आकाश के bit थोड़ा अधिक अंतर प्राप्त करने की कोशिश की
मैंने बस इसे कर लिया है
लेकिन इस तरीके से मुझे लगता है यह बेहतर कार्य करता है अतः यहाँ कुछ करना रह गया है क्या
अधिक जानकारी
यदि आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info @meetthegimp org पर लिखें
उम्मीद करती हूँ आपसे अगली bye फिर से मिलेंगे